और एक लिखा हुआ पेज भी रखा हुआ है और उ --

पे एक लोटा रखा है एक खिड़की के पास एक ब्लैक कलर का कपड़ा रखा हुआ है उस घर के सामने एक तुलसी का पेड़ भी --

के समय अर्थात आसमान हल्का रेड और येलो दिखाई दे रहा है।

मम बेचते हैं और पीछे दो लोग बैठे हैं और पीछे एक व्यक्ति यैल्लो कलर का टी-शर्ट पेहन के मास्क लगा के --

चॉकलेटी कलर से पेंट किया गया है और सीढ़ी भी है।

वस्तुओं के ऊपर उनके प्राइज भी हैं और बगल में ढेर सारे --